ए आदमी ऐ। आदमी पहाड़ पर जा रहा है। सुहा सूखा सूखा घास हो रखा है। ये दौड़ आ रहा है। बहुत बड़े चट्टान है। बड़ा सा पेड़ भी है।

यहा पे एक होटल बन रहा है इसमें बहुत सारी लकड़ियों की ओ ईमारत बन रखी है यहा पर एक बाईक भी खड़ी है।

ऑरेंज कलर के फूल हैं पीले कलर के फूल हैं। बोहोत सारा हरा सा घास है बना रहा। बोहोत ही सुन्दर पार्क लग रहा है।

यहाँ पर एक दुकान है इस में बहोत सारे बुके दिखाई दे रखे हैं फ्लावर दिखाई दे रहे हैं सीनरी दिखाई दे रही है।

अच्छी स्विष्ट स्वीट की दुकान खुली हुई है यहाँ पे। ताजे ताजे स्वीट --

यहाँ पर लाल कलर के रोज़ हैं। सुंदर लग रहे रखे है। बोहोत सारे हैं। नीले रंग की है।

यहाँ पे एक पार्क है इस पार्क में --

घने बड़े जंगल है। बड़े-बड़े पेड़ हैं। सुंदर सा बगीचा बना रखा।